यहाँ एक गेराज है। यह गेराज काफी बड़ा है। इस गेराज में बहुत सारी गाड़िया टूटी हुए गाड़िया लगी हुई है। यहाँ पर मेकेनिक है। यह गाडियों को ठीक करते है।

यहाँ पर रखे गए है यह काफी स्वादिष्ट लगते है खाने में यहाँ पर सभी आदमी यह चीज खाने में --

दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे पूजा करने की सामग्री रखी गई है यहाँ पर सभी आदमी भी पूजा करने के लिए आते हैं ।

यहाँ पर कुर्सियां लगी हुई है यह कुर्सियां पे बैठी हुई है यहाँ पर बहुत सारे आदमी यहाँ पर दिखने के लिए आते है।

सारे दुकानदार भी हैं यहाँ पर मछली काट कर भी बेची जाती है यहाँ पर खरीदी बेची जाती है बहुत सारे ग्राहक यह मछली खरीदने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं ।